ब्रदर्स और एक शॉप दिखाई दे रही है चार पांच सीढ़ी दिखाई दे रही है एक साईकल खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कांच का गेट भी दिख रहा बिजली खंबा दिखाई दे रहा है तार लगे--

जिसमे काच-काच ल-लगे हुए खिड़कीया है उपर आसमान दिखाई दे रहा व्हाइट कलर का।

अ हमे सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है मालन कर ज्वेलर्स और हमे दो एक आदमी और महिला दिखाई दे रहे है।

यहा पर हमे एक मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है जिसमे नीचे मछ्ली का आकार ब--

ये एक सब्जी के बाज़ार की फोटो है जिसमे उपर है येल्लो कलर की फनी टंगी हुई दिख रही है और नीचे सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है दो तीन सब्जी दिख रही है जिसमे पत्ता गोबी है भट्टे है।